सामने की ओर मुझे हॉल मॉल मे बहुत सारी शॉप दिखाई दे रही है शॉप मे मुझे बहुत सारे लोग आते जाते हुए भी दिखाई दे सकते है और यहा पे बहुत सारी ला लाइटस लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहा पर मुझे दो व्हेहिकल खड़ी हुई दिखाई दे सकती है जिसका कलर मुझे व्हाइट और रेड दिखाई दे रहा है एक स्टुडेंट भी बैठा हुआ है जिसने बॅग टंगा हुआ है।

तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के उपर जो ब्लॉक है उसका कलर मुझे रेड और येलो दिखाई दे रहा है यहा पर मुझे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो कि बहुत ही हरे भरे दिखाई दे रहे और इनके नीचे कुछ पत्ते भी पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

एक मे मुझे एक पोस्ट ऑफिस के जैसा दिखाई दे रहा है और आ सामने देखने पर मुझे बहोत एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे मुझे बहोत ही अ घास पूस वाली जगह दिखाई दे रही है और यहा पर मुझे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर मे मुझे एक घर बनते हुए दिखाई दे रहा है जिसके उपर प्लास्टर नहीं करा हुआ है और उसके उपर रेलिंग लगी हुई है इसे हम कह सकते है की ए अंडर कनस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है।

सामने की ओर मुझे बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे है घर बहुत ही शानदार अच्छे बने हुए है और यहा पर मट्टी दिखाई दे रही है मट्टी मुझे पीली कलर की दिख रही है।

यह तस्वीर मे मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे बहुत सारी घास दिखाई दे रही है । और यहा पर मुझे बहुत सारे झूले भी दिखाई दे रहे है।

तसवीर में मुझे एक अह गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन मे मुझे अह बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए दिखाई दे रहा है और यहा पर मुझे कुछ रोड भी दिखाई दे रही है जो रोड का कलर है वो मुझे अह ग्रे दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर जिनके ऊपर टाइल्स लगी हुई है।

तस्वीर मुझे गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन बहुत ही अ ह खूबसूरत दिखाई दे रहा इसमे जो प्लांटस की कटिंग की गई है वो काफी जादा सुंदर और अच्छे से की गई है और बिलकुल साफ सफाई से की गई है।

फिर मुझे एक रोड नज़र आ रहा है रोड का कलर मुझे ग्रे नज़र आ रहा है सामने की और मुझे एक गेट नज़र आ रहा है गेट के उपर कुछ लिखा हुआ है और यहा पे मुझे एक लोहे का गेट नज़र आ रहा है जो कि ब्लॅक कलर का है पिछे की और वॉल दिखाई दे रही वॉल जो है वो पुराने जमणे की ईटों की बनी हुई है।

पिछे की और मुझे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे आसमान बिलकुल साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा और ए दृश्य देखने पर काफी जादा अच्छा दिखाई दे रहा है।